बहोत सारे भगवान भी बैठे हुए है यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है बहोत सारा सामान भी रखा हुआ है यहाँ अ पर --

यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है उसके बहुत सारे बाल यहाँ पर सैलून बना हुआ है यहाँ पे फ्री में भी एक है यहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा है।

यहाँ पे पोस्टर भी लगा है उस पर बहुत सारी सुपर हीरो फोटो भी पड़ी हुई है यहाँ पे काँच के काँच के कुछ बना हुआ भी है यहाँ पे अच्छा लग रहा।